ये चित्र एक बड़े डैम का दिखाई दे रहा है जहाँ पीछे की तरफ बहुत से पेड़ और सामने आसमान नजर आ रहा है जो बहुत सुंदर लग --

इस चित्र में एक रास्ता जाता दिखाई दे रहा है ऊपर नीला आसमान आस-पास बहोत सारे पेड़ जो --

एक बड़े प्ले अ- मैदान का दिखाई दे रहा है सामने बहोत सारी बिलडिंगे बनी दिखाई दे रही है।

ये चित्र किराने स्टोर का है नीचे बहुत सारी आटे और बिस्किट और तेल की बोरी रखी हुई हैं सामान रखा है सामने अलमारियां बनी हैं जिसमे म किराने का पुरा सामान रखा हुआ है।

आगे कि तरफ एक-क लैपटॉप नज़र आ रहा --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

ये चित्र एक किराने स्टोर का है इसमें एक फ्रिज दिखाई दे रहा है फ्रीज पे बहुत सारा खाने-पीने का सामान रखा हुआ है।

ये चित्र किसी महल का दिखाई दे रहा है आस-पास बहुत सारी खिड़कियां है बीच मे रास्ता आगे जाके बहुत सुंदर गेट है और इसमें कोई व्यक्ति नजर नही आ रहा है।

खड़ा है पीछे एक व्यक्ति हेलमेट लगाये खड़ा है और टेबल पर एक कपड़ा रखा हुआ है।

ये चित्र बहुत सूंदर दिखाई दे रहा है आगे की तरफ हरे हरे पेड़ पीछे भी एक बड़ा पेड़ और बीच में पीले रंग का कुछ दिखाई- होटल भी दिखाई दे रहा है।

ये चित्र एक रोड का हैं इसमे बाटा का शोरूम नजर आ रहा हैऔर कुछव्यक्ति आते जाते नजर आ रहे है सामने नीला आसमान नजर आ रहा है सामने नीला आसमान नजर आ रहा है।